इस इमेज में एक जिम में लड़का खड़ा हुआ है।

एक मैदान दिखाई दे रहा है।

जिसमें हरे भरे पेड़ भी हैं कुछ चट्टाने भी हैं।

और कुछ फेंसिंग भी करी हुई है और साइड में एक ग्रीन कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है।

घर के ऊपर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें चिकन टिक्का रान और सिक कबाब भी दिखाई दे रहे हैं और चामीन का भी कुछ सामान दिखाई दे रहा है।

जिसका गेट ब्लू पिंक और वाइट --

इसके सामने कुछ पैर पौधे भी हैं।

बिल्डिंग के बाहर कुछ बहुत सारी गाड़ियां मोपेट खड़ी हुई हैं।

और कुछ टेबल्स कुर्सियां भी है।

जैसे बेगन है पत्ता गोभी है टेंडे हैं गाजर हैं--

के ऊपर रेड कलर का बोर्ड है जिसपे लिखा है चतुर्भुज फूट मार्क मार्ट --

और इस पे लाइट का अक्स भी पड़ रहा है।

और स्टील की रेलिंग भी बनी हुई है।

इसकी दीवार पर लाइट पिंक कलर पुता हुआ है।

इसकी जमीन काफी कच्ची नजर आ रही है।

बीच में मिरर विंडोज दी है।

शॉप है जिसका नाम श्री मोहन नर्सरी के नाम से शॉप है।

पास में दो बच्चे ब्लैक कलर के कॉस्ट्यूम में है बाकी सब ऑरेंज और ब्लैक कलर के धोतियो--

साइज में एक बोर्ड जिस परे लिखा है आर_के_डी_एफ --